बहुत सारा खाने पिने का सामान लगा हुआ है बिच में खाने पिने का लिक्विड सामान पड़ा हुआ कैंडी के बिच में ऊपर भी कुछ पिने के लिए बोत्लस पड़ी हुई है ऊपर से कॉफ़ी बगेरा लोल्लयपोप मुझे लटके--

इस इमेज मे चेक कर रहे है बहुत ही बड़ा पानी का झरना बह रहा है पीछे बहुत सारे पहाड़ है आगे ग्रीन कलर के अलग-अलग तरीके के पहाड़ है।

बहुत ही ज्यादा पानी बह रहा है पानी का कलर एकदम से लाइट-ग्रे है।

बाहर के काफी सीन ग्रीन कलर का है पीछे से एक नदी बह रही है जो ये ब्रिज बना है ]

जैसा कि हम चेक कर पा रहे है ये एक ग्रीन कलर कि शॉप है जिसमे कुछ काफी सारे पड़े हुए है पास मे एक ए_टी_एम का स्ट पे_टी_एम का स्कैन लगा हुआ है ब्राउन कलर कि चैयर पड़ी हुई है।

जैसा कि हम चेक कर प रहे है ये पानी का एक झरना है कुछ ग्रीन कलर का पहाड़ है आगे पानी का एक छोटा सा झरना है उसमे ग्रीन कलर के प्लांट लगे है बहुत ही मड्डी लग रहा है।